फ्री हुई है और कुर्सियां लगी हुई हैं।

ये एक बहोत ही सुंदर जगह है जिसमें बहोत सुंदर ट्रेन लगी हुई है।

पीछे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं बहुत ही अच्छा--

ये एक कपड़ो का शोरूम हैं जो बहोत ही सुंदर--

इसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहें हैं हरी हरी पत्तियां दिख रहीं हैं फुवारा लगा हुआ हैं।

और बहोत सारे लोग यहां पे इकट्ठे हुए है और बहोत ही सुंदर--

लड़के और लड़कियां फोटो खिंचवा रही हैं।

लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है।

घूमने की जगह है और बहुत सारे लोग यहां पे--

गाड़ी खड़ी है और सफेद रंग की ये बस लग रही है और बड़े-बड़े खंभे लग रहे हैं।

ये एक बहोत ही बड़ी ग्राउंड है जोकि बहोत ही अच्छे से ग्राउंड बनी हुई है और सभी लड़कियां यहां पे रनिंग कर रही हैं।

एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और--